जो की पढ़ाई कर रही है।

जिसमें चार लड़के नहा रहे हैं।

यहां पे दो कार नजर आ रही--

ये एक छोटा सा झरना है।

ये एक शॉप है जिसमें--

दिखाई दे रहा है हरे भरे--

एक जोड़े की शादी हो रहीं हैं जिसमें--

बोहोत सारे छोटे- छोटे घर और पेड़- पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और उसके सामने में बोहोत सारे स्कूटी और बाइक भी रखा हुआ है।

पहाड़ों पे एक आदमी चढ़ा हुआ है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर--

एक साइकल भी नजर--

ऊपर में दो लाइटें भी लगी हुई है।